ये जो पिक्चर है ये एक मिल्क बनाने वाले कंपनी की फैक्ट्री के बाहर की ली गई पिक्चर है यहां पे अलग अलग--

यह जो पिक्चर है यह एक रोड साइड एरिए की पिक्चर है यहां पे हमें कुछ ऑटो जाते हुए नज़र आ रहे हैं इस पिक्चर में।

रंग बिरंगी अलग अलग कलर के लेकिन इसमें ज्यादातर जो फ्लावर है जिनका कलर इसमें ऑरेंज है।

और यहां पे तीन से चार लोग है जो बातें कर रहे है आपस में।